इसमें कुछ आदमी बैठे हुए हैं और कुछ रेड कलर की कुर्सी है।

और कुछ पंखे हैं कुछ लाइट भी है।

यह एक पैलेस है इसमें कुछ व्यक्ति भी है।

और कुछ खम्बे दिखाई दे रहे हैं और कुछ खिलौने भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक कमरा है और हरे रंग का एक डस्टबिन है कुछ गाड़ियां भी है।

और व्हाइट कलर का आसमान भी है वो--

कुछ गोंद भी है और सीसे की खिड़की भीं है।

और दीवार पे वाइट कलर का पेंट है और संतरी का।

इसमें बहुत से बर्तन मिलते हैं।

जिसमें कुछ गाड़िया खड़ी हुई है और कुछ दुकानें भी दिखाई दे रही हैं।

और व्हाइट कलर की टाइल भी लग रही है कुछ बल्ब भी है।

यह एक रात का प्रोग्राम है।

इसमें कुछ पेड़ है और कुछ आदमी है।

यह एक हॉस्पिटल है जिसमें कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

और व्हाइट और संतरी कलर का टेंट भी लग रहा है और दो लाइट लग रही है।

यह एक ट्रेन है जिसमें दो घर है।

यह एक बहुत अच्छा ऑफिस है।

और बहुत पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

और वाइट और ब्लू कलर का आसमान भी है।